और यहाँ अच्छे-अच्छे गाठ है।

तो आज तीन आदमी आ रहें हैं यहाँ।

और यहाँ पर फुटबॉल खेलने के लिए भी है ग्राउंड ।

या एंड यहाँ लोग घूमने आते है लिट्टे भी है यहाँ पत्थड़ भी है।

और यहाँ पर खिड़की भी हम बहुत सारी।

और यहाँ पर दुकान भी है बहुत सारी।

और मजदूर भी है यहां पर और उनका एक बच्चा भी है।

दो बिल्डिंग छत्त मिलके बनती है।